और खाना पकाने के लिए सामान और कुछ टोकरियाँ हैं और एक लेडीज बैठी हैं सामें--

एक बूढा हैं इनमे दिख रहा हैं हाथ में लठ्ठ लेके चलते आ रहा हैं और बहुत बड़े बड़े झाडां दिख रहे हैं कुछ लोग हैं नीचे जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं बहुत बड़े बड़े झाडां दिख रहे हैं पीछे एक झोला भी दिख रहा हैं।

ये किसी पार्टी वाटी का डेकोरेशन दिख रहा हैं यहाँ पर लाइटिंग लगाई गया हैं जश्न किया जा रहा हैं टेप भी दिख रहा हैं।

डेकोरेशन में छत के ऊपर फुग्गे लगे गये हैं बहुत साल हो गये हैं यहाँ पर आ कर बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर अ अ काउंटर भी भरा हैं सामने बहुत सारे लेडीज भी दिख रहे हैं।

से बड़ा सा गार्डन दिख रहा हैं यहाँ पर आजू बाजू बहुत सा लोगां बैठे हुए यहाँ बीच में कौआ दिख रहा हैं कौए के ऊपर--

और बच्ची गले में बोले तो दिख रहा हैं पीछे झाडां दिख रहा हैं पीछे लेडीजा भी दिख रहे हैं।

अ सामने बच्ची भी दिख रही हैं और एक बच्ची बुच्ची एक एक औरत भी दिख रही हैं।

जे बड़ा सा मैदान दिख रहा हैं और आजू बाजू घरा भी दिख रहे है और आजू बाजू ज्यादा तरह झाडां दिख रहे हैं बड़े बड़े--

और वो कुछ पानी दिख रहा हैं बड़ा सा डबरा ठहरा हुआ दिख रहा हैं और आजू बाजू झाडां दिख रहे हैं।

और छोटे छोटे पौधे दिखाए सामने से कुछ औरते भी आ रही हैं कुछ लेडीज ठहरी हुई भी हैं।

ये किसी का बड़ा सा बंगला दिख रहा हैं लगता हैं इस बंगले में श कोई शादी का फंक्शन चल रहा हैं बहुत साल हो गये हैं दरवाजे के बाहर ठहरे हुए हैं।

कोई दंगले को लेटा दादे गये हैं पहले माले पर सीढियाँ भी दिख रही हैं।

जुलाई के झोला मिलता हैं और आजू बाजू बहुत सारे किरान दुकान दिख रहे हैं।

और बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं यहाँ पर रनिंग के लिए भागने के लिए एक्सेस करने के लिए बहुत सारे आइटम दिख रहा हैं कुछ लोग यहाँ पर आ कर एक्सेस भी कर रहे हैं।

और हर घर में और घर के सामने छोटे छोटे झाड़ा और छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं हर घर के सामने--

एक वाइट कार दिख रही हैं और घर के अ और घर के हाल में एक बाइक दिख रही हैं और हर घर के घर के सामने क्या दिख रहा हैं।

आदंगा दिख रहा हैं मोसंबी दिखे बहुत सारा चिजा दिख रहे हैं यहाँ पर--

और पीछे घर भी दिख रहा हैं आपको पीछे करंट का बोर्ड भी लगाया हुआ दिख रहा हैं।

ये कोई छोटे से ऑफिस दिख रही हैं यहाँ पर लगता हैं यह ऑफिस के अभी अभी ओपनिंग की गयी नवी न्यू न्यू खोली गयी हैं।

ये किसी का घर लेके आए हैं जो काफी पुराना दिख रहा हैं घर के सामने एक अ छोटा सा गार्डन भी दिख रहा हैं।

और ये ऐसा लगता हैं कॉलेज बंद दिख रहा हैं अ कॉलेज के बाहर बड़ा सा--

और परदे के पीछे खिड़की दिख रही हैं और एसी भी दिख रही हैं और अच्छा खासा बिछोना किया गया हैं गादी भी दिख रही हैं और दो तकिये भी दिख रहे हैं।

अब पूरे काँच के गिलास का पार्टीशीअन मारा गया है और बैठने के लिए बाहर काउंटर दिख रहे हैं कुर्सियाँ दिख रही हैं और इस ऑफिस में कोई नही दिख रहा हैं और--

ये बड़ा सा मैदान दिख रहा हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आ कर से यहाँ पर बैठे हुए हैं।

टेबल दिख रहे हैं यहाँ पर सोने के लिए बेड बे बिछाने के लिए बेड पेशंटो को सुलाने के लिए--

कनटा एक बार छोटा सा गिलास भी दिख रहा हैं और ऊपर गोली दबा के दी गयी छोटे छोटे--

एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिख रहा हैं यहाँ पर बहुत सारे चाक कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं।

और पीछे अच्छा सा छोटा सा कोक ऑफिस शॉप दिख रहा हैं पीछे चेयर भी--

रखी हुई दिख रही हैं काउंटर भी दिख रहा हैं पीछे और ये लोगास फोटो खींच रहे हैं सामने ठहर कर--